यह एक कपड़ा का दुकान है और टांगा हुआ है बहोत सारे कपड़े और समान सब रैक में भी रखा हुआ है।

यहां एक ये मॉल है और मॉल में बहोत सारे कपरे टंगे हुए हैं और बहोत सारे रैक पे भी रखा हुआ है।

यह रास्ता है रास्ता के पास ठेला खड़ी है ठेला पर समान है और कुछ आदमी है।

यहां पर मुझे पानी में आदमी खड़े हुए दिख रहे हैं।

और कैंपस के इधर घर भी है उधर भी घर है पेड़ भी है लगा हुआ।

ये मुझे दवाई का एक दुकान दिख रहा है जिसमें बहोत सारे--

खस्सी बकरी सब दिख रहा है एक आदमी है जो कि टॉप में कुछ लिया हुआ--

इसमें कुछ पेड़ पौधा भी लगे हुए हैं।